उसपे एक बोर्ड लगा करके आशीर्वाद भोजनालाय लिखा हुआ है।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

जिस रूम में बहुत सारी लाइटे लगी हुई है और सीलिंग पर फैन भी लटक रहे हैं।

उसे पे कुछ लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है और एक काउंटर बना हुआ है।

काउंटर पर एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य में रेलवे स्टेशन का फोटो नजर आ रहा--

इस पे एक ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रहा है।

उसे पे करकट लगा के तोलारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक आदमी ऑटो के अंदर बैठा हुआ है।

जिस रूम में बहोत सारी चेयर रखी हुई हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे बस लगी हुई है जो येलो कलर की है।

सीलिंग पे एक फैन भी लटकता हुआ नजर आ रहा है।

बहुत ही रंग बिरंग कलरफुल के कपड़े भी नजर आ रहे हैं।

साइड में लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

दृश्य में दुकान का पिक नजर आ रही है।

इस हॉल का दीवार व्हाइट कलर की है और उसके सीलिंग पे कुछ फैन लटक रहे हैं।

बहोत से चेयर बिछे हुए हैं।

दृश्य में बहुत से बॉक्स नजर आ रहे हैं और बहुत से चोंगा भी बंधा हुआ है।

यह दृश्य में बहुत सारे हाथी नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य में मार्केट का फोटो नजर आ रहा है।